जिसमें बड़े-बड़े दरवाज़े लगे हुए है जोकि काँच के है ऊपर खिड़कियाँ लगी हैं ।

स्लाइडिंग वाली और ये दीवार इसकी सफ़ेद कलर की है काले कलर की सीढ़ियाँ है लगी हुई है बाहर एक कार खड़ी हैं ।

चौखट दिखाई दे रही है जो की लकड़ी की बनी हुई है।

सफ़ेद कलर की दीवार दिखाई दे रही है उसपे ब्लैक और वाइट बोर्ड लगा हुआ है खिड़की दिखाई दे रही है लकड़ी की जिसपे काँच लगे हुए है लाइट दिखाई दे रही हैं ।

एक गेट दिखाई दे रहा है जो जो लाइटो से बना हुआ है पीली --

एक हॉल दिखाई दे रहा है दरवाज़ा दिखाई दे रहा हैं ।

मंदिर बना हुआ है जोकि स्रिस्य से सजाया गया है स्रिस्य की लटकन --

--ज़मीन पर कुछ बालिकाऐं बैठी हुई है जिन्होंने अअअ कुछ पेपर रखा हुआ है।

--छत्तों पर फॉल सीलिंग हो रखी है और लाइटे दिखाई दे रही है और खम्भे दिखाई दे रहे है।

टमाटर और हरी मिर्चों की ढेर दिखाई दे रहै है बड़े बैगन भी रखे हुए है।

टेबल रखे हुए है लोहे के छात्र खड़े हुए है कुछ बना रहे है शीट रखी हुई है उनके पास--